साइड में पुल के साइड में ग्रीन कलर के कुछ है और एक पुल है लाइट पोल है आदमी शू पहन के देख रहा है ब्लू कलर का पैंट रेड कलर का टी-शर्ट --

बार्बर है जो अपने शॉप में किसी का बाल काट रहा है दो पीपल्स है शॉप में मिरर है ।

कोई मेरिज होल लग रहा है जहां पे कुछ जेनएफर्स बुक्स पढ़ रहे हैं इन अ चर्च बहुत सारे डेकरैशन हैं।

और शटर हैं पर्पल का ब्राउन कलर का कुछ जगह पे ऐसे शॉप हैं।

यहाँ पे चर्च में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कुछ वेडिंग अनिवर्सरी चल रही है बहुत सारे चर्च के लोग हैं ।

लड़की सेल्फ़ी ली है हाथ मे फोन हैं दोनों ने ब्लैक ड्रेस पहन रखा है बाल खोल के हाथ मे बेंग्लस पहनी हुई है न्यू ओपनिंग है। दी सिटी कैफै का|

एक बच्ची भारत माता बनी है और बहुत सारे उसे प्रणाम कर रहे हैं सब के हाथ में इंडियन फ्लैग है बच्ची माँ बनी है उनके हाथ में गिटार है उसने रेड कलर की साड़ी पहन रखी है|

पानी ग्रीन टाइप है थोड़ा अ पानी में थोड़े प्लांट्स भी उगे हैं पानी के बगल में थोड़े ट्रीज भी है|

एक लेडी है जहां छत पूजा हो रहा है बोहोत सारे बच्चे लोग हैं ये कोई पूजा हो रहा है बोहोत सारे डेकोरैशन हैं बैलून्स से सजाए हैं ।

एक बोरा है एक बाल्टी है दो आदमी है जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है एक टी-शर्ट पहनी हैं दोनों ने पेंट पहनी है। वहाँ पे बोर्ड है जिसमे रेड लाइट --